इसमें चार खंबे हैं और दीवारों पर कुछ डिजाइन बना हुआ है।

ब्राऊन कलर का पर्दा लगा हुआ है ग्रीन कलर की मैट है कुछ लाइट हैं कुछ कुर्सियां हैं।

कुछ खिड़कियां है पेड़ लगे हुआ है।

कप फिटिंग में रखे हुए है।

उसके बाहर दो एक्टिवा खड़ी हैं इसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हैं।

यह एक मशीन है। इस मशीन के पास बोहोत सारे आदमी खड़े हुए हैं। कुछ आदमी इसमें काम कर रहे हैं।

इसमें बहुत सारी एसीयां है।

यह एक बड़ा बैंक है जिसकी मिनारो पर शीशे लगे हुए हैं।

इसके बाहर दो मोटरसाइकिल खड़ी है एक कार खड़ी है और दो आदमी टहल रहे हैं।

कुर्सियां डली हुई हैं कुछ बंदे बैठे है।

कुछ टॉफियां रखी हैं एक आदमी बैठा हुआ है।

इसमें दो बोर्ड लगे हुए हैं।

यह सिटी सेंटर सैलून है।